यहाँ पे उस अअ अथी टांगा हु --

पर कुर्सी है और लगता है एक कुर्सी है और यहाँ पर क्या है यहाँ पर सब में बेठता है और --